इस प्लेट पे मसालेदार बिरयानी के साथ हड्डी वाली पीस है जो की मटन या चिकन का लग रहा है।

तालाब को चारों ओर से स्टील ग्रिल किया है।

ये तीज त्योहार तालाब के किनारे मनाया जा रहा है।

एक आदमी काले रंग की छतरी लिए जा रहा है।

कुछ कार्स सफेद रंग और कुछ कार्स काले रंग की भी हैं।

इस दुकान में फिप्टी पर्सेंटेज का ऑफ चल रहा है।

और यहां पे कुछ बोर्ड भी लगे हैं।